और कुछ पर छाया भी दिख रहा है।

और उसके साथ कुछ कपड़े भी दिख रहा है।

और सामने पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे सफेद रंग का फूल भी--

और सामने पर कुछ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

इस कमरे का रंग हरा रंग और सफेद रंग दिखाई दे रहा है।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा--

मुझे इस तस्वीर पर बहोत सारे सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर पर एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है।

बैठने के लिए सोफा भी है।